घरों से बनकर अ झालर लगी हुई है पीछे बहोत सारे पेड़--

बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं जिनमें नीचे सफेद कलर-- ।

सामने एक बड़ा सा हॉल है और स्टेज बना हुआ है।

फसल लगी हुई हे और बीच में एक मेड है जिस पर एक--

दिख रही है और कुछ खंभे दिखाई दे रहे हैं जिनमें ऊपर बहुत से--

एक बड़ा लाल पोस्टर और उससे बड़ा सफेद और लाल पोस्टर लेगा है लगा है जिस पर--

एक सफेद शर्ट वाला आदमी है जिसके गले में--

सामने एक स्टेज बना है जिस पर सफेद कलर का सोफा है पीछे--

हुआ है जो पीले कलर की शर्ट और नीले कलर का पैंट --

कत्थई कलर की बहोत सी टेबले बनी हुई है और बीच में--

छतरी लगी हुई है और स्टूल रखे हुए हैं साइड में लकड़ी की दीवाल है जिसमें हरी--